नारंगी संतरा अ जो बहुत कुछ नजर आ रहा है केला --

इस चित्र हम देख सकते है की यहां पर हमे एयरटेल ऑफिस नज़र आ रही है।

इस चित्र मे हम देख सकते है कि यहा तीन मशीनें मौजूद है एक यहां पर साइकिलिंग मशीन है जिससे हम लोग रोजाना अपने पैरो से साइकिलिंग करते हुए अपने पैर के --

नोजवाँन लोग यहा पर खेलते हुए नज़र आ रहे है जेसे की क्रिकेट बेडमिनटन वगेरा।

और कई सारी जो भी चीजें हमें होती है जैसे के स्पीकर चार्जर वगेरा यहा पे आराम से मिल जाता है।

उसके लेग पीस कहते है उसको रखा गया है हरी चटनी रखी गयी है और गाजर से इसे सजावट की गयी है जो गोबी का पत्ता है उसकी मदद से --